स्टैंड में नीचे कुछ पहिए लगे हुए दिख रहे हैं।

झरने पर कुछ आदमी फोटो खिंचवा रहे है।

पीछे ऊपर एक टीन पड़ी हुई है जिसके नीचे एक तख्त पड़ा हुआ है।

रैक में कुछ कपड़े रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक लड़का एक बाइक पर बैठा है जिसके गले में एक रेड कलर का बैग टंगा हुआ है।

में से पानी निकलता दिखाई दे रहा है।

फोटो में एक घर दिखाई दे रहा है।

इसके ऊपर कुछ तार पर सुखते हुए कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

नीचे की तरफ कुछ घर पर खिड़कियां लगी हुई है।

और कुछ जाल लगे हुए हैं सामने एक शटर दिख रहा है।

सामने की तरफ कुछ नाव दिखाई दे रही है।

इस फोटो में सामने एक बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ फर्श बिछा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसमें कुछ बुजुर्ग आदमी भी दिख रहे हैं।

सामने एक गद्दे पर कैप रखा हुआ है और पीछे एक चौकी पर एक आदमी बैठा हुआ है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाया गया हैं।

सामने कुछ नीचे की तरफ सामान पड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक बड़ी सी नदी दिखाई दे रही है।

और दो स्वागत के बोर्ड लगे हुए हैं जिस पर वेलकम भी लिखा हुआ है इंग्लिश में।

नीचे की तरफ कुछ बैंच पड़ी हुई है।

अह कमरे के अंदर टाइल्सें लगी हुई हैं जो दीवार पर चिपकी हुई हैं।

नीचे की तरफ एक बड़ा सा दख्ता भी पड़ा हुआ है।

इस पर कुछ बोतले रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और कुछ नमकीन बिस्कुट के पैकेट दिखाई दे रहे हैं।

सामने दुकान के अंदर एक कुर्सी पड़ी नजर आ रही है।

सामने एक बड़ा सा खंबा दिखाई दे रहा है।

सामने छोटी छोटी अलमारी रखी हुई हैं।

बल्बों पर कुछ मालाएं और लटकी हुई हैं।

नीचे की तरफ एक बड़ा सा गमला रखा हुआ है जिसके अंदर एक पौधा खड़ा हुआ है।

नीचे अलग अलग तरीके की चीज़े लिखी हुई हैं।